दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं।

ये एक पूजा दिखाई दे रही है इसमें गणेश जी लक्ष्मी जी और बहुत सारे लोग हैं।

नीला नील रंग है लाल लाल चोंच है बड़े बड़े पैर है सुंदर सा--

लाइटें जल रही हैं टिम्मक-टिम्मक सुंदर सी बहुत ही सुंदर जगह है।

एक ने टोपी लगा रखी है तीनों के चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं छुपाए हुए हैं।

सामने हमें एक मॉल नजर आ रहा है जिसमें--